बहुत सारे लोग यहाँ पे भजन सुनने के लिये आये हुए हैं और कुछ औरत और आदमी भजन सुन के और मगन होके डांस कर रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट मे वेज तथा नॉन वेज पिज़्ज़ा बर्गर और अनेक सारी चीज --

यह एक स्कूल है। यह स्कूल में बहोत सारे बच्चे यहाँ पे पढाई करने के लिये इस स्कूल में आते हैं।

यह एक मंदीर है। यह मंदिर बहोत बड़ी है। यह मंदिर मे बहोत सारे भक्त पूजा करने के लिए आये हुए हैं। यह मंदिर के ऊपर --

पुजारी जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे पूजा करा रहे हैं। बहोत सारे लोगों की भीड़ इस मंदिर में लगी हुई है। यहाँ पे काफी सारे --

यह एक चर्च है। चर्च के बाहर कुछ औरत यहाँ पे खड़ी है। चर्च में बहुत ही अच्छी सजावट की गयी है। काफी सारे --